यह एक मंदिर नजर आ रहे है जिसके आजु-बाजु मकान अन्य शॉप है उसके सामने ऑटो रिक्शा बाइक आदि खड़े हुए है एक महिला पुरष भी नजर आ रहे है।

यह एक एक्सिस बैंक का कुछ ए_टी_एम नजर आ रहा है जहाँ इसके सामने बहुत सारे ढ़ेर सारे गाड़िया वहां नजर आ रहे है और दो तीन लड़के नजर भी खड़े हुए है।